यह एक पहाड़ है यह पहाड़ बहुत बड़ा और सुन्दर है इस पहाड़ पे पेड़ पौधे भी लगे हैं ।

और मजे भी करते हैं इस बगीचे में कई सारे पेड़-पोधे फुल भी लगे हैं |